यहाँ पर ये भैया जी सोए हुए हैं जो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है तकिया भी लगाया हुआ है और ये बेड शीट भी बिछाई हुई है यह कमरा भी बहुत अच्छा दिख रहा है।

यह कि डॉक्टर का दुकान है दवाई-उवाई रखें हैं बहुत अच्छे से दवाई देते हैं बहुत अच्छा हैं यह बहुत ही सुन्दर अच्छा दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा से यहाँ --]

यहाँ तनवी एक ऑफिस है जो बहुत बड़ा बिल्डिंग है और पेड़-पौधा भी दिखाई दे रहा है जो बहुत अच्छे भी पौधे लगाए गए हैं।

यहाँ की स्टेज भी बहुत अच्छे से सजावट किया गया है इधर भी बहुत अच्छे से दरी वरी बिछाई गई है जो बहुत अच्छी हुई बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है बहुत ही फर्स्ट है बहुत अच्छा है बहुत ही मस्त है।

यहाँ पर भी हरी-भरी घास थोड़ा लगा है जो बहुत अच्छा दिख रहा है बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है सब यहाँ का हरा बहुत अच्छा है।

यहाँ पर भी एक ठीक सा कार्य चल रहा है सामने सीमेंट का खुदरा लगाया जा रहा सब पलस्तर हो रहा है सब बहुत अच्छा दिख रहा है यह भी यहाँ--

ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छे से यहाँ पर बैंक मे लेन-देन होता है बहुत अच्छा दिया जाता है बहुत ही सुंदर--